और साथ में मिंट की चटनी है और ये कोई खाने की डिश है जिसका नाम मुझे नहीं पता है।

ये एक साज सजावट की दुकान है जो कि रोड पे लगी हुई है और इसमें लकड़ी के डमरू भी हैं और बहुत से लकड़ी के--

है इसके तीन चार पैकेट हैं और इसमें एक नेल पॉलिश का भी पैकेट है एक काजल का भी पैकेट दिख रहा है।

ये किसी मंदिर की तस्वीर है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं कुछ आम के पेड़ भी इसमें दिख रहे हैं।

इसके सामने बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं ये मेन रोड की तस्वीर लग रही है क्योंकि यहाँ पे वाहन का रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है।

ये किसी रेस्टोरेंट की पिक्चर लग रही है जिसमें ए_सी भी लगा हुआ है जिसमें कि दो ए_सी है।

ये किसी रास्ते की तस्वीर है जिसमें कि एक रोड दिख रहा है और सामने शायद एक मंदिर है जिस मंदिर पे पीपल का पेड़ भी--

की मशीन भी दिख रही है कुछ टैंकर सा भी दिख रहा है।

और इसके अंदर कुछ लेबर भी दिख रहे हैं जो की लोहा बनाने का काम करते हैं और इसके अंदर कुछ लोहा भी दिख रहा है।

आया है और उस दुकान के सामने एक औरत भी खड़ी है और उसके बगल में एक मर्द भी खड़ा है।

और गुलदस्ते मिलते हैं और सामने बहुत सारे पोल्स लगे हुए हैं जिनको बच्चे देख के खड़ी--

ये फोटो किसी सैलून का लग रहा है जिसमें ये एक गोल्ड प्लस का फेस वॉश रखा हुआ है जो कि चौबीस कैरेट का है।

और कुछ कुर्सियाँ भी ऊपर रखी हुई हैं नीचे मैट रखे गए हैं इसके बगल में वन एटी टू पुलिस नंबर दिख--

ये बिरला गोल्ड सीमेंट के प्रचार की तस्वीर लग रही है इसमें तीन लोग ऊपर टेबल पे बैठे हुए हैं और वो लोग ही--

जिसमें लड़कियां साड़ी पेहनी हुई हें और लड़के फॉर्मल कपड़े में दिख ते नजर आ रहे हें।

ये किसी रेस्टोरेंट का फोटो लग रहा है इसमें लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं ये बहुत--

और इसमें पंखे बड़ी सी रॉड में लगाकर लगाए गए हैं और इसमें लाइट्स भी बहुत तेज़ आ रही हैं।

यह किसी स्कूल की तस्वीर लग रही है इसमें क्लासरूम में एक बच्चा दिख रहा है और एक फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है।

और बाहर बच्चे भी खेलते हुए दिखाई दे रहे है और ये--

यह कोई शॉपिंग करने वाली जगह का फोटो दिख रहा है जहाँ पे एक रिक्शा चल रही है।

ये एक एच_डी_एफ_सी बैंक का ए_टी_एम है जिस ए_टी_एम का दरवाजा खुला हुआ है सामने ए_टी_एम मशीन दिख रही है।

यहाँ पे एक फील्ड दिख रही है जिसमें एक बिल्डिंग है और बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं।

यहाँ पे लोग फुलझरी चला रहे हैं जिनके पास बहुत सारे आग निकल रहे हैं और बिजली भी निकल रही है।

और यहां पे एक लड़का भी खड़ा है इसी ने फुल झड़ी में आग लगाई है और यहां पे गेट खुला हुआ है।

ये किसी कॉलेज की फोटो लग रही है जहां पे औरतें साड़ी पेहन के खड़ी हैं।

और इन दीवालो के नीचे सुंदर सुंदर तस्वीरे बनी हुई है और उसके आगे एक रास्ता--